इस स्टोर के बाहर कई सारे व्यक्ति सामान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस स्टोर मे बोहोत सारे सामान रखे हुए है जैसे चिप्स बिस्किट इत्यादि के सामान रखे हुए है।

सामने हमे एक पानी का ग्लॉस दिखाई दे रहा है जिसके किनारे - किनारे छोटी - छोटी मूर्तियां बनाई गई है।